पिक्चर में देखिए यहाँ पे आपको एक अंकल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है वहां पे कुछ आगे साइड मे एक अंकल बैठे है वो यहाँ पे कुछ आग जैसे लगी हुई है और आग बहुत ही तेज है यहाँ पे शायद लकड़ियों का काम होता है।

यहां पर देखिए आपको एक रेड कलर की कार दिखाई देगी जोकि ऊपर है मशीन के द्वारा उसको उठाई गई है आप देखे कुछ बॉक्सेस रखे हुए है रेड कलर के।

यहाँ पर दिखिए जैसे की आप पीछे साइड पर दिवाले बनी उसकी डिजाइनिंग कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पर दिखिए दो चेयर भी रखी हुई है।

देखने से येलो ग्रीन और डार्क ब्लू रेड बहुत सारे कलर के सूट्स टंगें हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में।

यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे हिरण हिरण दिखाई देंगी और हिरण घास खा रही है देखिए यहाँ पे एक बांस भी लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए जाले लगी हुई है इस जाले के अंदर सारे हिरण है और देखिए यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली है।

यहाँ पे देखिये बहुत बड़ी-बड़ी बोरिया रखी हुई है और एक वेट करने वाली मशीन लगी हुई है और एक जो वेट करने वाली मशीन लगी हुई है उसमे देखिये एक बोरी फसी हुई है और यहाँ पे देखिये बहुत सारे वर्कर्स है।

देखिये यहाँ पे आपको एक शॉप दिखाई दे रही है देखिये शॉप के बाहर एक खड़े हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं शॉप के ऊपर तो देखिये आपको एक बोर्ड देगा ब्लॉक कलर का और बाहर देखिये एक फिल्टर रखा होगा पानी पीने वाला देखिये शॉप के बहार कुछ बुक्स भी टंगी हुई हैं।